ग्रीन कलर व्हाइट कलर अ इसे फुल से भी सजाया गया--

और फेस वॉश दिख रहे हैं जो काफी खूबसूरत हैं।

जो एक कपरा दिखा रहा है उसका र कपरा शॉट का रंग ब्राउनड है और जो खारा --

व्हाइट और एक लड़का का पिंक कलर और जो बैठा हुआ है उसका आसमानी कलर है।

मंदिर का फोटो है जिसे बुद्ध भगवान खड़े हुए हैं।

और इसमें एक चक्र का फोटो है और मंदिर फूल से सजा हुआ है।